यहां एक व्यक्ति भी खड़ा है और दो व्यक्ति बेच रहे हैं।

यह एक बड़े से मैदान का दृश्य है।

ग्राउंड में नीचे भी छोटे छोटे घास जमे हुए हैं।

उसमें छोटे छोटे खिड़की लगे हुए हैं।

इसके नीचे फर्श पर ब्राउन कलर की टाइल्स लगी हुई है।

इसमें खिड़की बने हुए हैं खिड़कियों में ब्राउन कलर का पेंट किया गया है।

सल्लोटेप भी रखा हुआ है कीबोर्ड भी है।

रोड पर बाउंड्री किया हुआ है।

इस कमरे में एक खिड़की है।

में पिलर लगे हुए हैं लोहे की।

ग्राउंड के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ भी हैं।

इस ग्राउंड में बहुत सारे चेयर टेबल लगे हुए हैं।

कमरे में बहुत सारे आलमीरा बने हुए हैं।

इस हाल में एक काउंटर बना हुआ है काउंटर पे चार व्यक्ति खड़े हैं।

साइड में बड़े बड़े पेड़ भी हैं।

नीचे कारपेट भी लगी हुई है ।

इसकी दीवार का कलर व्हाइट है इसके आगे में बजाज लिखा हुआ है।

लाल कलर की कुर्सियां भी रखे हुए हैं।

यह एक खुले स्थान का दृश्य है।

नीचे में कारपेट लगा हुआ है।

इस कमरे की दीवार पर एक घड़ी भी लटकी है।

इस कमरे में दो व्यक्ति हैं।

ठेले पर लिखा हुआ है संत जी खालसा होटल ।

यहां पे छोटे छोटे चट्टान भी हैं।

और प्लांट भी लगे हुवे हैं।

ग्राउंड के चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ है।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

इस बिल्डिंग की दीवार का कलर क्रीम है।

स्टैचू के पीछे एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है।

एक लड़का सेल्फी ले रहा है।

यह एक घर का दृश्य है घर कि दीवार का कलर ग्रीन है।